और यह इसमें ऊपर में लिखा हुआ है कि होटल सत्यम आई.ऐन.ऐन. बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

और वहाँ पर वह खेल रहा है और पानी भी पला रहा है।

यह मैदान टाइप का मुझे तो लग रहा है। .

और बगल में एक व्यक्ती खड़ा है और यह सामने में सैलून है जो फ्रेंड्स ब्यूटी बाय कॉम वैसे लिखा हुआ है।

यहाँ पर शिव भगवान का मूर्ती बना है।

और सैलून वाला है एक छोटे बच्चे का वहाँ पर बाल काट रहा है।

यहाँ पर कई प्रकार के मछलियाँ है छोटे -छोटे भी मछलियाँ है। .

ए पत्ता -उता है वैसे नज़र आ रहा है पत्थल बहोत बड़ा -बड़ा--